आ मुँह मे हाथ डाली हुइ है शुज पहनी हुई है। ब्लेक कलर की जिन्स है इसकी एक पोनिटेल बनी हुई है अ बिल्डिंग बनी हुइ है। बडी बडी लाइट --

इसके उपर अ लाइट ब्लु और डार्क ब्लु कलर का पेंट है एक बडा सा बोर्ड लगा हुआ है इसके उपर कुछ लिखा हुआ है एक बड़ी सी रेड कलर की कार खडी--

अलग अलग रंग के फूल हैं ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ हैं ऊपर की तरफ हैं लाइटे जलाई जा रही हैं जो की बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं।